यहाँ पर बहोत भीड़ है और आदमी भी बहुत है ऑटो भी खड़े है दो ठी और उधर से बस भी जा रहे है।